ये देखो कितना बढ़िया मकान के अंदर एक बोर्ड सा लगा हुआ है जहाँ कोई भी चीज टांग सकते हैं। देखो एक लेडीज़ की तस्वीर टंग रही है एक घंटा टंग रिहा है कितना बढ़िया लग रहा है।